एक ब्लैक कलर में पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ के नीचे बहुत सारा मैदान दिखाई दे रहा है --

पौधों में बहोत सारी घास भी दिखाई दे रही है। एक बहोत बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है। नीचे रोड दिखाई दे रहा है।

एक रेड कलर की बाउंड्री खिची दिखाई दे रही है और बाहर बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी हरी भरी घास उगती दिखाई दे रही है।

एक एक शटर दिखाई दे रही है और बिल्डिंग में खिड़कियाँ दिखाई दे रई | बिल्डिंग भाइट कलर की दिखाई दे रई | एक पौधे की कुछ पत्तियाँ दिखाई दे रही है और आसमान भाइट दिखाई दे रहा--

और एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के पास एक लोहे का खम्भा दिखाई दे रहा है और एक पौधा दिखाई दे रहा है नीचे हरी भरी दूबा उगाई उगती दिखाई दे रही है।

एक पैलेस दिखाई दे रहा हैं जिसके अन्दर बोहोत सारी अन सोफा और कुर्सियां लगी हैं। कुर्सियाँ रेड कलर की दिखाई दे रही --

टी.वी. दिख रही है हरी हरी दिखाई दे रही है। खम्भा भी दिखाई दे रहा है। रोड भी दिख रहा है बड़े बड़े पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है और ऊपर बादल भी दिख रहा है।

एक बहुत बड़ा बागीचा दिखाई दे रहा। बागीचे में कुछ भी दिखाई दे रहा दिख रहा है। कुछ बच्चे भी दिख रा है। एक खम्मा भी दिखाई दे रहा। खम्भे में दो तो दिख रही।

ये एक मकान दिखाई दे रहा है। मकान में व्हाइट कलर का पेंट हो रहा है और शेर की वो भी बनी हुई है लोहे का गेट लगा हुआ है। ईट विट दिख रही है रास्ता भी दिख रहा है मिट्टी भी दिख रहा --

पेड़ के नीचे एक महिला बैठी दिखाई दे रही। बहुत सारे बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं और एक लोहे का खम्भा भी दिखाई दे रहा है।

एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में एक टेबल लगी हुई है जिस पर बहुत सारा खाना रखा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ चेयर भी ढकी दिखाई दे रही हैं हॉल का कलर ब्राउन दिखाई दे रहा है।